इस सेल में काफी सारी मेट्रिसएस देख पा रही हूँ जोकि तरह तरह की मेट्रिसएस है और ये रंग-बिरंगी कलर की मेट्रिसएस दिखाई दे रहे है। किसी मेट्रिसएस दुकान की ये तस्वीर है।

और इसे इसके अलग-बगल में भी मैं कुछ दुकाने देख पा रही हूँ जिसे विक्रेता लोग बिक्री कर रहे हैं अपने सामनों को लेके।

इस तस्वीर मे मैं चाय की सेंटर देख पा रही हूँ जो की तंदुरा चाय स्पेशलिस्ट की सेंटर मे देख पा रही हूँ। जहाँ पे तरह तरह चाय की कुल्हड़ रखी हुई है।

और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ की चाय के दुकान मे एक छोटे बालक को भी में देख पा रही हूँ सामने मे में चाय के कुछ पोस्टर पे छबि भी देख पा रही हूँ।